तथा यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

तथा आसपास काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान में काफी सरे बादल दिखाई दे रहे है।

जैसे की में यहाँ देख पा रही हुँ यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इन्होंने अपने मुँह के ऊपर हाथ रखा हुआ है एक व्यक्ति ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है जिसने आखों पर चश्मा लगाया हुआ है।

यहाँ पे नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे असना ए. टी. एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।